इसकी छत पर कलरफुल लाइटें जली हैं।

और एक पंखा दिखाई दे रहा है।

और यहां पर एक रूम है जिसमें सफेद पेंट हुआ है।

यहां पर बच्चे भी खड़े हुए हैं और सामने शीशा लगा हुआ है।

उन्हें डालकर और यहां पर तीन बच्चे दौड़ रहे हैं।

चित्र में हमें स्टेशनरी की दुकान दिखाई दे रही है।

ए सीमेंट के पिलर में लगे हुए हैं।

लोहे की रैंक लगी है रैंक के अंदर --